तस्वीर में आप देख सकते है नीला आसमान है जबज आसमान नीला है और नीचे जमीन पे देखिये अ चार पांच बस खड़े हुए है लाल रंग की दो बस वाइट और पीले रंग की एक--

डैमेज हो चुका है और साइड में जो मट्टी के ईंट के पत्थर के दीवाल भी है और आगे चलके बहुत बड़े पेड़ है ऊपर आसमान है नीला --